यहां पर बहुत सारी बाइक्स रखी हुईं है और यहां बहुत सारी कॉर्स लगी हुई है।

यहां बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं और यहां बहुत सारे लोग इस नहा करते हुए पूजा भी कर रहे है।